यहां पर बहोत सारे लड़के खड़े हुए हैं।

यह चित्र एक दुकान का है।

किसी ने इस चित्र का फोटो खींचा हैं।

यह चित्र एक दुकान का हैं।

इस दुकान पर बहोत सारा सामान रखा हुआ हैं।